इस चित्र में पार्लर पार्लर है पार्लर में--

और एक हाथ में पड़े हुए कप को रखा है काफी --

एक ड्रम हैं बहोत बड़ा जिम का रूम हैं जिसमें बहोत सारे मोशिन रखे हैं।

इसमें बहोत सारे लोग खेलने का--

और कार और पिक अप भी खड़ है।

बिजली की लाइट की खंभा लगी है और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए बाउंड्री के उस पार--

घर के आंगन में बहोत सारे पौधे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उस तरफ बिजली की लाइट की खंभा लगी है।

और इस चित्र में बहुत बड़ा ज्वेलरी शोरूम है जिसमें बोहोत सारे ज्वेलर --

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे थाना प्रभावी खड़ी से--

कुछ इंसान इस तखत के पास बैठे हैं।

नीचे ब्लैक कलर की जमीन है ऊपर फैन चल रहे हैं।

दीवाल के पास एक बड़ी सी खिड़की है जिसमें ब्लैक कलर के परदे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक डायरी है जिसमें चार्ट एंड द डायरी लिखा हुआ है।

इस चित्र मे एक बहोत बड़ी कार है जिसके चक्के खुले हैं सामने के इंजन भी खुले हुए--

और एक मिस्त्री इस कार्य को रिपेयरिंग कर रहा है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की पर्दा ल--

इस चित्र में बहोत बड़ा पेट्रोल पंप हैं पेट्रोल पंप के किनारे बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है बिल्डिंग के पास बड़ी सी--